सूरज के रौशनी के कारन पानी में परछाई दिख रही है।

कुछ लोग पानी में खड़े दिख रहे है उन्होंने रंग-बिरंगे कपड़े पेहन रखे है पीछे की तरफ बोहोत सारी रंग-बिरंगी पानी में उतरने के लिए फिसलपट्टी--

एक हरे रंग की तिरपाल और चटाई के ऊपर बहुत सारी महिलाएं बैठी है।

सामने एक सीमेंट के बड़े से गेट के ऊपर हरे रंग का एक बैनर लगा है जिसपे ईद मुबारक लिखा है।

निचे लोहे का रोड डाली हुई है आधे में लेंटर डला है आधे में डल रहा है सामने पिले रंग का बड़ा सा माकन दिख रहा है और गुलाबी मकान।

ऊपर एक और बोर्ड लगा है नीले रंग का जिसमे कुछ डिज़ाइने बनी है और अंग्रेजी में कुछ लिखा है।

ऊपर का छत सफ़ेद रंग का है और सब से ऊपर टिन लगा हुआ है हल्के नीले रंग का।

कुछ खुटिया जैसा लाल रंग गड़ा हुआ है ऊपर धुप आने के कारण आधी जगह का धुप और आधी छाव दिख रही है।

एक महिला एक पुरुष वो दोनों झरने की और देख रहे है।

तस्वीर के अंदर एक मंदिर जैसे मंडा बना हुआ है जिस में सामने तरफ पिले रंग की चेयर रखी--

दिख रहै है जिसके अंदर सामन दिख रहा है ऊपर एक ग़ुलाबी रंग का बोर्ड है जो हल्का लाल है निचे की ओर से --

ऊपर एक टॉप बना है काले रंग का ऊपर आसमान नीला दिख रहा है पीछे बड़े - बड़े पेड़ दिख रहे है।

यहाँ पेड़ में परछाई रोड के ऊपर दिख रही है कुछ नरगी रंग का हिस्सा रोड के किनारे दिख रहा है।